साथ में बिल्डिंग का कलर व्हाइट दिख रहा है और--

रेड कलर का यहां पर चेयर दिख रही है।

पीछे व्हाइट कलर का फैन लगा हुआ--

पीछे बोहोत सारे लोग कारपेट पर बैठे हुए हैं।

जिसमें ग्रीन कलर के हमें टहनियां दिख रही है।

जो कि यहां बड़ा में ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बेड दिख रहा है।

एच_डी_एफ_सी बैंक का ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा--

जो कि यहां व्हाईट कलर का है।

आयरन का बना हुआ एक पोल दिख रहा है।

ग्रीन कलर के पेड़ के पत्ते दिख रहे--

साथ में आसमान का कलर ब्लू --

यहां पर हमें दिखाई दे रहा है--

एक व्यक्ति पीछे दिख रहा है।

और पीछे की ओर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे है।

यहां पर वाइट कलर की कार दिख रही है।

टेबल वुडेन का दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें दिखाई दे रहा है।

पीछे वाइट कलर की बहुत सारी गाड़ियां--

जिसका कलर हमें दिखाई दे रहा है ब्लैक और साथ में कुछ डायमंड कलर दिख रहा है।

सामने हल्का सा रेड कलर दिख रहा है।

पीछे की ओर आसमान का कलर हमें दिखाई दे रहा है।